इस पिक्चर में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी के बीच-बीच में मुझे काफी सारे पत्थर और चट्टाने दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो कि तीन मंजिला बना हुआ है।

जहाँ पर मुझे रेलवे लाइन पटरी दिखाई दे रही है रेल की पटरी--

एक बस का कलर रेड एंड येलो है एक बस का कलर ब्लू और वाइट है।

इसमें मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो ब्लू बैग उठाये --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

कार सफेद कलर की है पास में ही मुझे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें मुझे पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के बाजू मुझे काफी सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

में मुझे सामने ही एक कैफे दिखाई दे रहा है जिसका नाम रेबन कैफे है।

इस पिक्चर में मुझे कुछ लड़कियां रांगोली बनाते हुए दिखाई दे रही है लड़कियों ने एक लड़की ने --

क्रीम कलर की सीट बनी हुई है सामने मुझे गणेश जी की पिक्चर दिखाई दे रही है।

होटल के गेट पर पर्दों से डेकोरेशन किया गया है जिसमें --

बाहर मुझे फ्लावर्स का भी डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

मुझे इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है इसमें मुझे चेयर्स भी दिखाई दे रही है सामने मुझे --

ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है पीछे मुझे एक लेडी --

रोड के यहाँ पर मुझे डिवाइडर दिखाई दे रहा है और एक थंबा दिख रहा है।

जिसने ब्लू टी-शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर का बैग टांगा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक फ्लावर की शॉप दिखाई दे रही है जिसमें काफी सारे फ्लावर्स पड़े हुए हैं।

पार्किंग एरिये का फ्लोर वाइट कलर का है इसमें ब्लू कलर के थंबे दिख रहे है।

बाहर मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं पेड़ का तना चॉकलेटी कलर का है।

बाहर मुझे दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं और आसपास मुझे काफी सारे लोग घूमते हुए दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है।

तालाब के बीच में मुझे एक छोटी सी बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है।

तालाब के साइड में ही मुझे छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

केक वाइट और रेड कलर का है केक के ऊपर छोटे-छोटे हार्ट लगे हुए हैं।